एक आदमी है जिसने आ बैग पहन टांग रखा है और सिर पे कैप लगा रखी है सामने गार्डन है जिसमें हरी घास --

जिसमें एक सामने खड़ा है जिसने सफेद की टी-शर्ट पहन रखी है।

कुछ पत्ते ऑन है सामने और एक पेड़ है।

यह नाव है बोट है जो सफेद कलर की है और ब्लू कलर की है। उस पे --

काले कलर के नीचे जीन्स या पैंट है उसके अलावा उसने आस-पास कुर्सियां है जो लाल कलर की है।

हमारे सामने एक मैदान है जिसमें कुछ व्यक्ति --

उसी के पास ट्रक भी है उसके अलावा एगो बोर्ड लगा हुआ है जो सफेद कलर का है।